यह एक गैरेज है जिसमें की बाउंड्री हो रही है और पास में पेड़ खड़े।

और नीचे यह एक आने जाने का है जो श्रद्धा भी रखते हैं फिर आने जाने का।

यह कोई मॉल है जिसमें रूफ फॉर्चून माल लिखा हुआ है।

और पास मे ग्रीन कलर की बाउंड्री --

एक बच्चा है मार्क्स लगा रखा है वह नीचे ब्लू कलर वाले में नीचे आएगा और मतलब फिसले गा।

और गिफ्ट वगैरा रखे हैं किसी में कप रखे हैं।

ये साथ में एक वो दीवार है। इसके पास में एक वॉश बेसिन लगा हुआ है।

सामने तीन आदमी खड़े हैं।

और एक आदमी है जो की अपने वैसी व्हाइट कलर की टीशर्ट पहने हुए हैं।

पेपर बनाने वाली ऐसी छोटी सी कोई फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारी बुकेज रखी हैं।

सामने थोड़ा हुआ है छोटा कमरा रूम बना देते हैं।

और बस में एक मूर्ति भी लगी हुई है छोटी सी।

यह एक प्लेस है जैसे की मैरिज प्लेस है।